ये एक यहाँ पे बड़ा सा तालाब दिख रहा है।

बाउंड्री खींची गयी है और अः जो बाजु यहाँ पे बहोत सारे--

ये एक यहाँ पे बड़ा आ आ सा गार्डेन है और यहाँ पे बहोत सारे--

एक छोटा स्पीकर भी है वाटर बॉटल भी रखी हुई हैं ऊपर टी_वी हैं बाजू में यहां फ्रिज --

और आजू बाजू यहां पे बहोत सारे पौधे भी हैं बड़े बड़े बिल्डिंगा भी यहां है।

और यहां पर दो भैंसों को बांधा गया है हरी भरी बहोत सारे पानी में यहां--

ये एक बड़ी सी घर है यहां पे बहोत सारे लोग--

टेसनरी शॉप है यहां पे एक अदमी दिख रहा है सामने भी एक अदमी है।

सामने एक यहां पे तालाब दिख रहा है नीचे यहां पे हरी भरी घास उठी हुई है।

बडे-बडे बूटियों में तरकारी रखी हुई है यहाँ पे --